सब बच्चों ने नीले कलर का आई कार्ड गले में डाले हुए हैं कुछ बच्चों ने आई कार्ड नहीं डाले हुए हैं।

आगे की तरफ आदमियों ने सफेद कलर के कपड़े व लाल कलर की पट्टीदार गले में डाले हुए हैं।

जिसपे गोल्डन की कुछ आकृतियां बनी हुई हैं।

पीछे की तरफ एक आदमी प्लस के चिन्ह पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

जीसपे सफेद कलर की बलब जले हुए दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ एक मिट्टी का ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे केबिन छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं जो नीले कलर के हैं।

उसके शर्ट पर अरमान एक्सचेंज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो काले अक्षरों से है।

आदमी ने ब्लैक कलर का कोट और ऑरेंज कलर का साफद डाले हुए हैं।

ऊपर ए_सी_सी लिखा हुआ है एक साइड ए_सी_सी सुरक्षा डबल इंजन।

जिसपे लाल रंग का पेंट हो रखा है व लाल रंग की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है नीचे की ओर बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए है।

तीन मोमबत्ती का किसी सामान के ऊपर रखी हुई है जो मिट्टी का है।

यहां पर एक दूर तक जाती हुई एक रोड दिखाई दे रही है जिसके साइडों में सफेद रंग की पट्टी दूर तक जाते हुए दिखाई दे रही है।

इस पे मान शोरूम ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है।

पीछे की तरफ नीले अक्षर से रेडीमेड एंड कॉस्मेटिक लिखा हुआ है और कुछ बच्चे बने हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे पानी की टंकियां रखी हुई है जो विभिन्न रंगो की है।

और जिन पे लिखा हुआ है डेलिबिन्स जो हरे रंग की है कुछ सफेद रंग की है।

पीछे की तरफ बहोत सारे उंचे व बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ना कुछ पैकिंग सफेद कलर की है ना कुछ पैकिंग ब्लू कलर की है।

पीछे की तरफ एक ए_सी लग रही हुई दिखाई दे रही है जो पीले कलर की है।

यहाँ पे एक मेज़ पड़ी हुई है जिसका रंग मटियाला है और एक गेट दिखाई दे रहा है जिसपे पीले कलर का रंग हो रखा है।

जीस पर रंग बिरंगी लाइटें गोलादार व चमकदार लगी हुई है।

पीछे की तरफ घास फूस दिखाई दे रही है जो हरे कलर की है।

जो इसमें सोफे कल पड़े हुए हैं जो सफेद कलर के हैं।

यहां पर एक बुग्गी दिखाई दे रही है जिसपे कुछ मशीन लगी हुई है।

और आगे की तरह मिट्टी के बॉक्स लगे हुए हैं जिनमें मिट्टी अलग अलग हो रखा है।

और पीछे की तरफ कुछ प्लास्टिक के पाइप रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आगे की तरफ ऊंचे ऊंचे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ बहुत सारी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है जिसमें नीली और सफेद है।

परेक पीले कलर का बहोत बड़ा चक्रा दिखाई दे रहा है जो एक बिल्डिंग के आगे है।

इंग्लिश में लर्न टू लाइव वॉक इन टू फ्यूचर लिखा हुआ है।

आगे की तरफ एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है।

दीवाल पर एक पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर एटी न्यूज़ लिखा हुआ है।

इसके चारों तरफ कुछ टायर पड़े हुए हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

जी के ऊपर पन्नी के अंदर पैक हुई पत्तलें दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक दूर तक जाती हुई रोड दिखाई दे रही है और बहुत सारे ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

कुछ ट्रक खाली हैं कुछ ट्रक लोड हो रहे हैं कुछ में लोडिंग के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर स्टील की चीजों के अंदर रखे हुऎ टायर दिखाई दे रहे है।